और यहां पे मेरे को एक पोल दिखाई दे रहा है जिसे जो इलेक्ट्रिसिटी की तारे भी लगी हुई है यहां पे बहोत ही ज्यादा ग्रीनरी भी है बैक साइड --

ये कोई बिल्डिंग लग रही है आर्किटेक्चर की जहां पे --

लगे हुए स्केलस भी लगे हुए हैं शायद।

और हॉस्पिटल का जो भी होता है।